कोई चॉकलेट फ्लेवर है कोई मिल्क फ्लेवर वाला है और डेरी मिल्क भी पड़ी है डब्बों में मिठाई भी है।

एक लड़की ने हाथ में झंडा ले रखा है कुछ व्यक्ति नीचे गोडा डा रखे हैं और ये स्टेज पे नाच रहे हैं कोई --

प्रोग्राम है और एक व्यक्ति दो व्यक्तियों के ऊपर खड़ा है जोकि लड़का हाथ में कुछ नहीं है उसके पीछे स्क्रीन चल रही है।

जीसमें छोटे छोटे टोकरियां सी पड़ी दिखाई दे रही है सामने एक दो मूर्तियां भी दिखाई दे रही है एक ताजमहल सा छोटे छोटे --

हां तो दोस्तो मेरे सामने एक पहलवान सा है ऑटोमोबाइल की दुकान है।

जिसमें मुझे दो कार दिखाई दे रही है।

ऑटोमोबाइल के आगे कार की फोटो चिपकाई हुई है अंदर मुझे कुछ डेन भी दिख रही है जो --

यहां रिवर की चीज कमाके रब्बा सीना हिला दिन्धा है यहां रिवर की चीज कमा --

जिसके पास एक राह है जिसके ऊपर कुछ हरी घास उग रही है और पास में बड़े बड़े वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं चे --

सामने एक दुकान है दोस्तों जोकि लिखा हुआ है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा और कुछ डब्बे भी दिखाई --

जिसके सामने एक स्टैंड भी बना हुआ है सामने एक आदमी भी खड़ा है जो की किसी का इंतजार कर रहा है।